और यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर भी टांगा गया है यहाँ पे दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

टेबुल भी रखा गया है उस पे जेंट्स एक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बहुत सारे लाइट भी लगाए गए हैं जो व्हाइट कलर का जल रहा है।

यहां पर रेल का बॉक्स भी यहां पे दिखाई दे रहा है।

यहां पे विद्यालय का चित्र दिया गया है यहां पे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां दिखाई दे रही है।

इसपे वाटर बॉटल रखा गया है कुर्सी का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

यहां पे लैपटॉप का चित्र दिया गया है।

और यहाँ पे एक बाइक भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे तीन व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक स्कूल बैग भी यहां पर रखा हुआ है यहां पे एक गमला में बहुत फूल का पत्तियां भी दिखाई दे रहा है।

एक बास में दो चोंगा भी बांधा गया है दो गाय भी यहां पर दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारे पलंग का चित्र दिया गया है यहां पे एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा--

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे टाइल्स भी रखा लगाया गया है।

यहां पे ग्राउंड का चित्र दिया गया है ग्राउंड में घास हर भरे दिखाई दे रहे हैं।

और पीला कलर दिखाई दे रहा है यहां पे दो पंखा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे सोफा भी रखे गए हैं यहां पे बहुत सारे फोटो भी टांगे गए हैं।

यहां पे एक पेट्रोल पंप का चित्र दिया गया है यहां बड़ा सा एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक चेयर भी रखा गया है यहां पे बहुत सारे एक सोफा भी रखे गए हैं।

यहां पर बहुत सारे रड भी यहां पे दिखाई दे रहे हैं यहां पे बहुत सारे तगाड़ी भी रख दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे दो बाइक भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे तीन व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे बहुत सारे टेंट का चित्र दिया गया है। टेंट का कलर वाइट ब्लू दिखाई दे रहा--

यहां पे पार्क का चित्र दिया गया है।

और एक स्कैनर भी रखा गया है काउंटर पे यहां पे एक दीवार खड़ी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बिस्किट और चॉकलेट का केक दिखाई दे रहा है।

बिस्किट का कलर भी वाइट और ब्लैक दिखाई दे रहा है।